पेड़ लगे हुएं दिखाई दे रहें हैं।

यहां पे एक वर्कर कार की सर्विस कर रहा है।

यहां पे सभी प्रकार के वाहनों पर लोन और इंश्योरेंस की सुविधा उपलब्ध है।

यहां जो गाड़ियां हैं वह कमीशन पर बेची और खरीदी जाती है।

यह मंदिर बीकानेर के पास देशनोक में स्थित करणी माता टेंपल है।

यहां विद्यार्थियों के अध्ययन करने के लिए बहुत सारी फर्नीचर और कुर्सियां लगाए गए हैं।

यहां पे चारों तरफ छोटे बड़े पेड़ लगाए गए हैं और एक छतरी लगी हुई है।

यह एक विद्यालय का कमरा है।

जिसमें मेंस की हेयर ड्रेसिंग और हेयर कलर शेविंग की जाता है।

और प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं।